और चर्च की दीवार पर व्हाइट पेंट किया गया है ऊपर रेड कलर का पट्टा डिज़ाइन में है और उसपे चर्च का नीसान दिखाई दे रहा है। ऊपर बल्ब भी --

और सफेद- कलर के सफेद कलर के शर्ट पहने है ब्लॅक कलर का पैंट है और पीछे कुछ लेडिज खड़ी हुई है।

यहा एक बड़े से हॉल मे कुछ इस्टूडेंट्स बैठे हुए है। सामने एक इस्टूडेंट खड़ा है।

और यहा पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो हात में एक सफेद पाइप लिए हुए है और इसके साइड और भी व्यक्ति बैठे हुए है।

एक ट्रे डिब्बे में मछलिया रखी हुई है बड़ी छोटी और बोईए का तराजू बना हुआ है और एक आदमी लोहे का तराजू रखे हुए है दो व्यक्ति खड़े हुए है चार व्यक्ति बैठे हुए है।

अह रखा हुआ है सदर अस्पताल गोपालगंज इसकी सामने बहुत सी बाइके खड़ी हुई है एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है कुछ व्यक्ति आ जा रहे--

यहा पर एक हॉल मे बहुत सी लेडिज खड़ी हुई है और रंगबिरंगी साड़ीया पहने हुए है रेड येल्लो ब्लॅक और एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है जो रेड कलर का टोपर लगाए हुए है एक दादाजी जी भी बाजू में खड़े दिख रहे है।

यहा पर चार पाच साल का एक अ क्यूट सा लड़का खड़ा हुआ है और इसके पीछे गेंदे के पेड़ लगे हुए है येल्लो कलर के गेंदे में फूल खिले हुए है।

छोटे बड़े मछलिया दिख रही है और टब एक रेड टब में भी बहुत सी ब्लाक कलर की मछ्ली पड़ी हुई है और एक व्यक्ति सामने जिसका हाथ दिख रहा है वो मछ्ली साइड हात किया कुछ व्यक्ति बैठे --